सामने एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमे घास दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है आदमी दिखाई दे रहा है कुछ बच्चे दिखाई दे रहें है ईट रखी हुई है भवन दिखाई दे रहे है नीचे मिट्टी है कुछ गड्ढ़े बने हुए है।

सामने बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में खिड़की दिखाई दे रही है छत दिखाई दे रहा है दरवाजा बना हुआ है रॉड्‌ दिखाई दे रही हैं ।

सामने बहुत से फूल दिखाई दे रहे है जिनका कलर येलो दिखाई दे रहा है और ग्रीन दिखाई दे रहा है सामने बहुत सी औरते दिखाई दे रहे है दो आदमी दिखाई दे रहे है आसमान दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जमीन दिखाई दे रही हैं ।

ए लोहे का रैलिंग दिखाई दे रहा ऊपर छत मे परदे दिखाई दे रहे हैं भगवान के मूर्ति के पीछे एक मूर्तिकार और दिखाई दे रहा हैं ।

घास फूस लगी हुई है। सामने बहुत सा बड़ा ग्राउंड बना हुआ है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है। नीचे बहुत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है । कुछ भवन बने हुए दिखाई दे रहे है।

एंड सामने एक लड़का दिख रहा है जिसने येलो कलर का शर्ट पहना हुआ है बाइक और स्कूटी दिखाई दे रही है ऑटो दिखाई दे रहा है ए लेफ्ट साइड पे भी दुकान बना हुआ है ऊपर रेल्लिंग दिखाई दे रही है।